और ऊपर स्काई ब्लू कलर का आसमान दिख रहा है स्काई ब्लू कलर का नीचे पानी भी दिख रहा है।

बड़ा हॉल हैं यहां पे बहुत सारी बेंच रखी हुई हैं जो की ब्राउन एण्ड कलर की हैं सामने बोर्ड भी लगा हुवा हैं जो की व्हाइट कलर का हैं।

जंगल जहाँ पर बहुत सारे पेड़-पौधे लगे है जिसमे आधे सुख गए है और आधे अच्छे दिखाई दे रहे है।

यहा पर बहुत सारी बिल्डिंग बनी हुई है बहुत सारी कार खड़ी हुई है बहुत सारी गाड़िया है एक लेडी है जो क्रीम कलर की साड़ी पहन के जा रही है गाड़ियों में बहुत सारे हेलमेट टंगे हुए है।

एक कुर्सी रखी हुई है जोकि मुझे ग्रे कलर की दिखाई दे रही है ऊपर बिल्डिंगो में बहुत सारे कपड़े भी टंगे हुए है एक ऑटो खड़ा हुआ है। ऑटो के पास एक जेंट्स भी दिख रहा--

एक मिरर लगा हुआ है मिरर के सामने एक बैनर लगा हुआ है जिसमें एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

दुकान है जहाँ पर पेंन्न-पेंसिल रबर स्केल कलर सब मिलता है और--

बना हुआ हैं स्टेज पे बहुत सारा डेकरैशन किया गया हैं जिस मे भगवान की मूर्तिया भी बनी हुई हैं दो पोट खड़े हुए हैं जिस मे फ्लावर लगे हुए हैं ऊपर मोर बने हुए हैं फ्लावरों मे बहुत सारे कलर भी लगे हुए हैं।

पीछे एक केनात लगी हुई हैं जो रेड कलर की हैं। फ्लावरों का कलर रेड व्हाइट --

ये एक रोड हैं रोड के सामने कपड़े की एक बहुत बड़ी दुकान हैं ओर बहुत बड़ी बिल्डिंग भी बनी हुई हैं बिल्डिंग मे बहुत अच्छी झालरे लगी हुई हैं उसके बाजू मे भी एक बिल्डिंग हैं जहा बहुत सारे पुतले खड़े हुए हैं कपड़े पेहन के--

और बहुर सारे ऑटो खड़े हुए हैजिस मे से बहुत सी ऑटो मे ई रिक्शा भी आए है और एक बिल्डिंग बनी हुई है जिस मे बहुत सारे कांच लगे हुए है ।